है जिसमें बहुुत सारे लोंग आते-जाते रहतें हैं और इसके चारो तरफ काफ़ी ग्रीनरी हैं।

ये फोटो एक जंगल के बीच में रिवर के किनारे का फोटो है जिसके चारो और काफी सारे पेड़-पोधे जगली पेड़ पोधे हैं।

जिसमे उसके बैक के कट दिख रहे हैं और जो काफी अच्छे कट्स आ गये हैं और ये जिम करने का प्लान इसका सक्सेसफुल हो गया है।

इस फ़ोटो में दिख रहा नजारा में एक व्यक्ति --

जिसमें एक लड़का एटीएम में खड़े होके अपना एटीएम से पैसा निकाल रहा है और यह एसबीआई बैंक का है और दो आदमी एक मिरर में दिख रहे है।

यह फोटो एक घर में हो रहे फंक्शन का है जिसमे एक डाक्टर अ शिवपाल सिंह इंटर कॉलेज के पड़ोस में कोई एक घर है जिसमे --